यहाँ पे चेयर रखी है और एक वॉच लगी हुई है।

और नीचे ब्लैक कलर की लोअर रक पहनी हुई है।

यहाँ पे बहोत सारे लेबर हैं और बहोत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं।

एक रेड कलर की चेयर रखी हुई है और एक सिल्वर कलर की स्टेज लगी हुई है।

यह एक जगह है जहाँ पे बहोत सारे पुरुष उपस्थित हैं।

यह एक जगह है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है।

वह सर झुकाए लेटे हुए हैं और उन्होंने व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है।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

और एक नयी येलो कलर की टी-शर्ट और ब्राउन कलर का लोअर पहना हुआ है।

और सामने एक तस्वीर लगी हुई है कृष्ण जी की और उनकी गोपियां --